सफ़ेद कलर्स के पेपर्स रखी हुई हैं चेयर --

जिनकी लम्बी बीक है ऐसा लग रहा है जैसे तोते हैं |

लड़के यहाँ पे घूम रहे हैं आस पास पहाड़ पे |

ये खिड़कियाँ है लाल कलर का बॉर्डर है।

सलून नहीं है य और सामने आँखों के फोटो जुड़ के --